इस चित्र में हमें एक उद्यान दिखाई दे रहा हे ।

इस चित्र में हमें एक टेंट लगा हुआ दिखाई देता है एक घर के बाहर बैठे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं काफी साफ़ सुथरी व्यवस्था हैं कुर्सियां लगी हुई है छाया की गई है बोहुत सुन्दर इंतजाम किया गया।

चित्र में हमें काफ़ी सुन्दर पार्क दिखाई दे रहा है जहाँ पे एक हाथी की मूर्ति बनी हुई हैं। कुछ बच्चे नज़र आ रहे हैं। यहाँ काफ़ी झूले बने हुए हैं। पेड़ पौधे काफ़ी सुन्दर दिखाई दे --

इस चित्र में हमें एक उद्यान दिखाई देता है जिसके मध्य में एक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी की मूर्ति लगी हुई है।

इस चित्र मे हमे बच्चो का एक पार्क दिखाई देता है। जहाँ कई तरह की फिसल पट्टी और झूलों की व्यवस्था है। बिजली के खंभे लगे हुए हैं।